पर रंगबिरंगी लगी हुई है और कुछ मशीने भी रखी हुई।

बोटेल है कुछ पेढ पोधे भी लगी हुए है नीचे फिर हरयाली भी लगी हुए है वो एक सिडिया--

एक घर बना हुआ है यहा पर पर्दे भी लगे हुए है पर्दो के साथ एक सुन्दर डेकोरेशन कियी गयी है यहा पर आपको एक ब्यान भी दिखाई दे रही है ये एक बाउंड्री है जिसके अंदर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए है।